जिसे जा के हम बैठ के क्रिकेट होते हुए देख सकते हैं।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और इस जंगल में पांच लड़के जो कि दो लड़के बैग टांगे हुए हैं।